इस चलचित्र के अंदर प्लेग्राउंड के अंदर रखी जाने वाली सीढ़ीनुमा आकृति को दिखाया गया है जो बहुत ही सुन्दर और अट्रैक्टिव --

हर टाइम ट्वेंटी सेवन यहां ऑफिस वर्क के लिए हाज़िर रहते है क्युकी आशीष कटारिया इसको संचालित करता है।